और उनके तौलने का सामान रखा हुआ हैं भैय्या खड़े हैं।

यहाँ एक गाँव हे आस-पास पेड़ हे ।

यहाँ स्कूल है जिसके --

सारी चीजों के सामान हे अंकल खड़े हैं।

पूरा कवर किया गया है नीचे लोग बैठे है और तीन --

और लाइटो से और कारपेट बिछाए गए है लोग खड़े हैं ।

जहाँ योगा कर रहे है सब के अलग-अलग कपड़े बिछे हैं।

यहाँ बेट रखे है अलग अलग कंपनी के टी_ओ_एन --

और यहाँ निचे हैं ।

जिसके बड़े बड़े चैनल गेट है उपर सीढी गई हैं ।

ए बाइक खड़ी है और आस-पास भी --

कुछ लोग बाइक पर है कुछ लोग सामने खड़े हैं ।

और इंहा सामने भी कैमरे लगे हैं ।

वो कुछ छोटे है और बड़े है हैं ।

और का सामान भी सामने आईना लगा दिया हैं ।